प्लाजू और बहुत सारे कपडे भी जींस लोभार बहुत सारे कपडे पहने हुए है ऊपर भी दिखाई दे रहे है छो और बहुत सारी लाईटे भी दिखाई दे रही है।

इसमें बहोत सारे पाइप भी दिखाई दे रहे है और बड़ी-बड़ी खिड़की भी दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे कांच भी लगे दिखाई दे रहे है कलर भी--

और बगल में गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है और बड़े-बड़े यहाँ पर लाइटे भी दिखाई दे रही है जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है आसपास बहुत सारे टाइल्स भी दिखाई दे रही।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

जोकि बहोत बड़ा लग रहा है इस के आसपास बहोत सारे पेड़ लगे हुए है कुछ हरे है और कुछ अम्म सूके हुए है जो की बहुत गदें दिखाई दे रहे है इसके बहार एक गाडी भी देखाई दे रही है।

अगल बगल में बहुत सारी खिड़की दिखाय दे रही है जो कि काच कि दिखाय दे रही है और ऊपर बहोत बहार बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है और ऊपर बहुत सारे बादल भी छाए हुए है कि जो सफ़ेद दिखाई--

इसकी बगल बगल में बहुत सारे नेट -- बहुत सारे खंभे दिखाई दे रहे हैं जो की लाइट की दिखाई दे रही है इसके ऊपर बादल भी छाए हुए है इसके बगल बगल में बहुत सारे हमें यहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो की हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

इस के ऊपर बहुत सारे हरे भरे-पेड़ दिखाई दे रही है बादल भी छाए हुए जो कि नीले और सफेद दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे भी है जो कि सफ़ेद दिखाई दे रहे है काले भी दिखाई दे रहे है।